यहां कुछ फंक्शन हो रहे हैं यहां बहोत सारे आदमी लेडिस बच्चे हैं।

एक आदमी साइकल लिए खड़ा है एक आदमी कलहा कपड़ा लिए खड़ा है।

नीचे सड़क है इसके टायर ब्लैक है।

कुछ गमले रखे हैं ऊपर कुछ फूलों से सजावट हो रही है।

और इसमें जिम करने का बहोत अच्छा सामान है।

एक बड़ा झूला है बड़ा स्विमिंग पूल है।

यहां दो आदमी बैठे है आदमियों के मुंह पे गत्ता लग रहा--